और मिट्टी के बगल में कुछ गिट्टी दिख रही है यहां बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं ऊपर आसमान पूरा साफ दिख रहा है।

यहां पे एक टेबुल और दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ प्लेट रखे हुए हैं।

ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है जिस पे बी_एस_के_डी पब्लिक लिखा हुआ है।

यहां चार पांच व्यक्ति दिख रहे हैं और एक महिला दिख रही हैं महिला के हाथ में कपड़ा दिख रहा है ऊपर रेक के ऊपर बहुत सारे प्लास्टिक के अंदर कपड़ा है।

नीचे में एक स्विचबोर्ड दिख रहा है उसके ऊपर लाइट लगे हुए हैं कुछ तार दिख रहे हैं यहां पे तीन चार व्यक्ति है जो बैठे हुए हैं।

और उसके हाथ में कुछ मशीन दिख रहे है एक हथौड़ी है यहां पे कुछ दरवाजे के पार्ट रखे हुए नीचे हैं।

एक चेयर दिख रहा है पीछे में दो बाल्टी दिख रहे हैं जो लाल रंग का है।

उपर में बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं जो उजला रंग के हैं यहां पे कुछ लाइट जल रहा है।

यहां डब्बा दिख रहा है दो नीचे और तीन चार बोतल दिख रहे हैं एक डस्टबिन दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारी ग्लास फेंके हुए हैं मिट्टी के।

यहां एक लाल रंग का चेयर है बगल में एक टेबुल दिख रहा है जिसके ऊपर न्यूजपेपर रखा हुआ है।

यहां कुछ उजले रंग के डब्बे दिख रहे हैं नीचे में एक बोतल रखा हुआ है।

एक खंबा दिख रहा है लोहे का एक रस्सी दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ लम्बर टंगे हुए दिख रहे हैं यहां कुछ पाइप भी रखे हुए दिख रहे हैं।

यहाँ एक पेट्रोल टंकी का दृश्य दिख रहा है पेट्रोल टंकी के अंदर दो टंकी का दृश्य दिख रहा है जिसके अंदर पाइप लगे हुए हैं पाइप काले रंग के हैं।

यहां तीन चार शटर दिख रहा है दुकान के अंदर बहोत सारे बैग और रखे हुए हैं।

और यहां बहुत सारा घास दिख रहा है और कुछ पौधे भी दिखे रहे हैं।

ऊपर में एक घड़ी दिख रहा है यहां पर एक स्विच बोर्ड है जिसके बगल में एक टेलीफोन रखा हुआ है।

यहां चर्च के अंदर एक प्लस टाइप का साइन बना हुआ है यहां पे एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है यहां बहुत सारे महिला और पुरुष भी चेयर बैठे हुए हैं।

यहां एक दुकान का दृश्य दिख रहा है दुकान के बाहर बहुत सारे व्हाइट कलर के डब्बे रखे हुए हैं जिसके पर मैक्सी और बहुत सारे कुकर का चित्र बना हुआ है।

यहां पे एक रूम का दृश्य दिख रहा है रूम के अंदर दो गेट दिख रहे हैं यहां एक चेयर दिख रहा है।

यहां दीवार का व्हाईट कलर पेंट किया हुआ है एक स्विच बोर्ड पर दिख रहा है जिसके अंदर तार लगा हुआ है दीवार पे फैन टंगे हुए दिख रहा है ऊपर लाइट जल रहा है।

यह एक जिम का दृश्य दिख रहा है जिम के अंदर बहुत सारे जिम मशीन दिख रहे है जैसे की एक आदमी बैठ कर जिम कर रहा है।